अ-यह ओ सामने एक गेट लगा हुआ है और ऊपर एक फूल का गमला भी है ये एक मशीन लेते हुए इसका इलाज कर रहा है और--